सर्विस सेंटर नज़र आ रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारी कारो की सर्विस होती हुई अ नजर आ रही --

जैसे की अपन देख पा रहे है यह एक टैंक है और टैंक के --

जैसे की अपन देख पा रहे है यह एक ग्राउंड --

नज़र आ रहा है और यहाँ पे स्कूली अअ बच्चे यहाँ पे --